कुछ खाना ही झूठा पड़ा हुआ है।

गेंदे के फूल और लाल कलर के फूलों की माला पहनाई गई है मूर्तियों मे एक आदमी खड़ा है।

बहुत सारे छोटे लड़की और लड़के डांस कर रहे है।

यहाँ पे चारों तरफ बड़े-बड़े हरे कलर के पेड़ हैं।

दूर बड़े-बड़े घर दिख रहे हैं।

चारों तरफ बड़े-बड़े हरे पेड़ है ऊपर आकाश है।

पिलर है सफ़ेद कलर की ऊपर छत सफ़ेद कलर का है।

हरे पेड़ दिख रहे हैं उपर आकाश दिख रहा है।

बिजली के बड़े-बड़े खम्बे हैं उपर आकाश है।

सामने गेंदे की फुल की माला से डिजाइन बनाया गया है।

यहाँ पे काफी पुरानी सी एक इमारत दिख रही है।

यहाँ पे प्रशिक्षण संस्थान की बड़ी-सी बिल्डिंग है।